बाल में कुछ लगाए हुए हैं और बाल में छिड़कने के लिए पानी वगैरह रखा हुआ है और दो सामने खड़े हुए बाल काटने के लिए एक मोबाइल से देख रहा है।

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें सामने टी_वी लगा हुआ है और लाइटे लगी हुई है।

एक सामने रूम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं।